यह केनेरा बैंक में बहुत दूर-दूर से लोग पैसा निकासी जमा करने के लिये आते हैं। केनेरा बैंक बहुत ही --

फूल की सहायता से सजाया गया है जो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं।

सुंदर हमे श्री बाला जी हॉस्पिटल दिखाया गया है। यह श्री बाला जी हॉस्पिटल मे बहुत अच्छे --

यह एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुन्दर हमें --

यह एक बहुत ही अच्छे और सुन्दर यहाँ --

यह एक बहूत ही अच्छा और बहूत ही सुन्दर हमें --

छे को लड़के दिखाये गये हैं जो की --

बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुन्दर और यहाँ बहुत ज्यादा सुविधा भी है।

सारे चीज दिखाए है।